अ दो लोग चश्मा लगाए हुए है। टेबल के ऊपर कई सारा सामान रखा है। फ़ाइल्स भी रखी है। म --

अ बोरियों की मदद से इसके अंदर कुछ डाल रहे हैं जो की बड़े-बड़े स्टील के भगोने जैसे बने हुए हैं अ दो आदमी हैं कई सारे स्विच बोर्डस है।

सभी के हाथ मे ढोल धमाके हैं सरो के ऊपर कुछ अ पत्तों का बना कर रखा गया है अलग अलग रंग के सबने कपड़े पहन रखे है| बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है | खंबों मे से तार निकल रहे हैं काफी --

ही प्यारा लग रहा है। अनार जलता हुआ इसमें से अ प्यारी-प्यारी चिंगारियां निकल रही हैं। एक बस खड़ी हुई है। काली जन --

स्टील के भगोने हैं कुछ प्याज़ रखी हुई है सब्जियाँ रखी हुई हैं।